मैं भी इस स्कूल में पढ़ा हूँ।

भाई साहब बराती गए हैं लगता है पूरा फ़ोटो घीचा रहें हैं मज़े में।